यहाँ पर एक शिव जी की मूर्ति दिखाई दे रही है जो काफी बड़ी है और एक त्रिशूल भी पकड़ा हुआ है डमरू भी दिखाई दे रहा है उसी में।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

यहाँ के घर थोड़े अलग ही लग रहे हैं पानी की टंकी भी है एक हरे कलर की दिखाई दे रही है।

डिजाइन हो रखी है टाइल्सों में चॉकलेटी कलर सफेद कलर का और एक स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर का।